पंडाल बना हुआ है जिसमे चार पहियों की गाड़ी भी खड़ी है दो पहियों की गाड़ी खड़ी है।

ऑफिस की तरह कुछ दिख रहा है या संसद भवन जैसा कुछ दिख रहा है।

तालाब में पानी है पानी में बोट है जो लाल कलर की है और उसी के पीछे ये पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

बहुत साड़ी चार पहियों वाली गाडी खड़ी हैं और उसके बाद सामने पीछे दो पिलर्स खड़े हैं और पिलर्स के बिच में एक बोर्ड है जिसमें कुछ लिखा हुआ है।

छोटी छोटी दस बारह खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

सामने एक स्टोर दिखाई दे रहा है और पर्ल की दुकाने भी दिखाई दे रही है और सामने कुछ बोरे भी रखे हुए हैं।